नींबू येलो और ग्रीन कलर का है।

यहाँ में ड्रम्स रखा हुआ है व्हाइट और ब्लू कलर का।

से बनाया हुआ है।

ब्राउन कलर में है।

बहुत सारा पेड़ दिखाई पड़ रहे है।

बादल सफेद से दिखाई पड़ रहे हैं।

जो ब्राउन कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

और जूता रेड कलर का है।

और एक टिंकी दिखाई दे रहा है।

दो सिक्योरिटी गार्ड्स दिखाई दे रहे हैं।

आगे मैं फ्लावर दिखाई दे रहा है।

हाथ में रेड कलर का बांधा हुआ है।

दो तीन स्कूल बस निकल रही--

और सभी का जूता ब्लैक कलर है।

ये एक स्कूल है जो येलो और व्हाइट कलर का है।

और मोरा दिखाइ पर रहा मोरा के उपर मे कुछ बोतलों सब रखा हुआ है।

बिलिंग भी दिखाई पड़ रहा येलो कलर का और--

और कुछ फ्लावर भी दिखाई पड़ रहा है ग्रीन कलर से।

और बंबू भी दिखाई पड़ रहा है।

और बनाना दिखाई दे रए ग्रीन कलर का।

फल दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का।

और बिम्बु दिखाई दे रहा है।

इसमें से बिल और क्लिप दिखाया जा रहा है।

ऊपर में कुछ सामान रखा हुआ है पैक करके रेड कलर में।

खूब सारा तार दिखाई पड़ रहा है।

एक टावर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक हॉस्पिटल है जो सफेद कलर से बनाया हुआ है।

और यहां में एक लोहा का टिफिन भी है।

और तार भी दिखाई दे रहे हैं।

और व् तार भी दिखाई पड़ रहा है और एक दरवाजा दिखाई पड़ रहा है जो ग्रीन कलर का है।

और चार लड़का दिखाई दे रहे हैं।

पर्पल रेड कलर का दिखाई दे रहा है।

लड़की ब्लू कलर का पहना हुआ है।

पीछे मे दिखाई दे रहा है।

बादल भी फिर सफेद कलर से--

ये एक घर है जो ब्लू और व्हाइट कलर से बनाया हुआ है।

कुर्सियां दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर का बनाने वाला है।

बहुत सारा कुर्सी दिखाई दे रहा है जो ब्लैक कलर का है।

लड़का है जो सफेद कलर का पहना हुआ है।

यहां में कुछ लड़के और लड़कियां दिखाई दे रहा है।

और एक बैग दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का।

और बहुत सारा लाइट दिखाई पड़ रहा है।

घर में बहुत सारा चेयर है येलो कलर का।

टेबल का ऊपर भी बोतल भी रखा हुआ है और क्यू_आर कोड भी रखा हुआ है।

एक टेबल दिखाई पड़ रहा हैं जो येलो कलर का है।

और बहुत सारे बैलून दिखाई पड़ रहा है।

और चप्पल पहना हुआ है रेड और ब्लू कलर का।

और टीना दिखाई पड़ रहा है।

और कुछ कपड़ा है जो सफेद कलर का कपरा पैक करके रखा है।

जो एक सो के है एक चल के है।

दूर में कुछ बाइक रखा हुआ है।

येलो कलर का एक चेयर है।

और फुट ब्लैक कलर का दिखाई दे रहे है।